और पिट रखी हुई है तीन चार घन बने हुए हैं बहुत सा सामान रखा हुआ है और रेक बनी हुई है वाइट कलर की रेक है कथे कलर की रेक है।

बहुत अच्छा सामान रखा हुआ है और अंदर मोबाइल टाइप का बना हुआ है वह व्हाइट कलर से है और गुलाबी कलर का दिवार है।